एक टावर है और टावर के पीछे एक और टावर है। और मार्केट में बोहत भीड़ है। बोहत सारे लोग है कोई अपने गाडी के साथ है कोई पैदल है।

पीछे घांस है जो काफी खूबसूरत हरे रंग का है । सामने से रोड है जो बहुत ही साफ है और ये घर काफी आलीशान--

यह एक मार्केट का सीन हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग अपने वाहन लेकर आ जा रहेरहैं हैं बहुत सारे वाहन वही पर खड़े हैं आदमी पेदल भी आ जा रहे हैं सामने पेड़-पोधे हैं जो हरे रंग के भी दिख रहे हैं।

यहाँ पर एक मंच बना हुआ है जहाँ पर बहुत लोग खड़े है तो कुछ बैठे हुए है यहाँ सीढ़ी बनी हुई जिस पर बैगनी रंग के कपड़े से ढका हुआ है।